आं बंधी हुई है उसके गले में रेड और क्रू कुछ क्रीम कलर की रस्सी बंधी हुई है मुँह में भी रस्सी बंधी हुई है।

यहाँ मंदिर सीमेंट कलर का दिख रहा है आस पास कुछ बहुत सारी गाड़िया खड़ी हुई है और बहुत सारे पेड़ भी है यहाँ एक ऑरेंज कलर --

यहाँ बहुत बड़ा समुन्द्र दिख रहा है समुन्द्र में चारों और बहुत सारे जहाज खड़े हुए है कुछ लोग जहाज में दिख रहे है।

एक बेंच रखा हुआ है सामने एक वाइट कलर की बिल्डिंग भी दिख रही है उसमें ब्लू कलर का टिंच शर्ट दिख रहा है ।